इस तस्वीर को देखने में ऐसा लगता है जैसे यह लड़की योगा कर रही है।

यह दृश्य देखने मे ऐसा लग रहा है जैसे यह मार्केट है यहां टमाटर मिर्ची भिंडी परवल प्याज जैसे सब्जी है।